और पूल में एक नाव भी दिखाई दे रहा है।

नेवी ब्लू व्हाइट का किया हुआ हैं।

इस दृश्य में एक रिक्शा वाला दिख रहा है जिसका रिक्शा --

हरे-हरे पेड़ पौधे भी हैं यहां पर एक पेड़ सुखा भी प्रतीत हो रहा हैं यह देश बहुत अच्छा लग --

इस दृश्य में एक जनरेटर दिख रही है।

यहां पर बंदे भी खड़े हुए हैं।

इनवेलॉप ब्लैक व्हाइट कलर से पेंट है।

नॉर्मल रूई की गांठे दिख रही है जिसमें रुई के बंडल बना बना के--

पौड़ियां लगी हुई है और ऊपर--

पंद्रह बीस कुर्सियां भी रखी हुई है जिसका कलर ब्लैक है और इसमें पंखे भी लगे हुए हैं।

गांव के घर का दृश्य हैं जिसमें--

और ये बहुत अच्छा दृश्य हैं।

एक पौड़ियां है जिसमें ग्रिल लगी हुई है यह एक घर का दृश्य है।

एक बिल्डिंग की लग रही है।

जिसमें रेड अह और वाइट कलर का--

बहोत सारे पेड़ है यह खुले मैदान में स्थिर है।